यहाँ पर एक ब्लैक और एक रेड कलर की कारे दिखाई दे रही है।

और यहां पे कुछ सोफे रखे हुए है जो ब्लैक कलर के है साइड में दीवाल में बड़ा सा दो पोस्टर लगा हुआ है।

और कुछ खिडकियाँ भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ साइड में बड़ा-बड़ा सा पेड़ दिख रहा हैं लाइट दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है पुरा चारों तरफ से पानी-पानी दिख रहा --